कार दिखाई दे रही है जो बाइट कलर की है एक स्कूटी दिखाई दे रही है और हमे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और ये देखने में अच्छा है।

इस इमेज में हमें सर्किट लगी हुई दिखाई दे रही है एक पीले कलर की चुनरी टंगी हुई दिखाई दे रही है।